ऊपर एक छत नज़र आ रही हैं बहुत सारी कुर्सियां हैं जिन पर कोई सकस नही बेठा हुवा हैं आउट साईड में दीवाले हैं सामने गेट हैं खिडकिया हैं।

और बहुत सारे अ गार्डन जेसा लग रहा हैं बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और भी चीजे हे बहुत सारे पेड़ हैं बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जोकि यहाँ पर हैं।

बसे भी नजर आ रही है। ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ कालीन नजर आ रही हैं जो कुछ रेड और ग्रीन कलर की हैं। उन्होंने वाईट कलर के ड्रेस पहन रखी है। पेड़ नजर आ रहे हैं। पीछे यल्लो कलर के --